यह एक नजारा है यहाँ बहुत खूबसूरत दिखता है यह एक पार्किंग टाइप का है।

यह बहुत मस्त दिखता भी है।

यह एक यह एक अच्छा डेकोरेशन सजावटी भी है अच्छा डेकोरेशन भी किया हैजो शादी वादी में करता है।

यह बहुत अच्छा न दिखता है यह नजारा भी अच्छा है यह बहुत खूबसूरत है।